बाबूजी एक मशीन है जहां ये लाइट वगैरा का काम रहता हैउनको बंद चालू होती है।

ये बड़े देशों में रहती है जहां पर हम कुछ खाने का सामान भी ले सकते हैं।

तस्वीरें बनी होती है ये कोई भी स्त्री पुरुष या फिर बड़े-बड़े --

नेताओं की पुरुस्त बनी रहती है पुरानी डिज़ाइन में।

हमारी ख्वाहिश भी रहती है कि हम इसे देखे।

यह एक मरीज है शायद उसका ईलाज हो रहा है उसके पैर में चोट लगी है।

बड़ी सिटीयों में ऐसे ही रेलवे स्टेशन होते हैंघर की तरह।

देखकर बहुत खुश भी है शायद !इसलिए रेली वगैरा लगी हुई है अच्छा लग रहा है देखने में भी आ--

तो यहां ट्रेनिंग की जाती होगी शायद ऐसा लग रहा है ।

बड़े-बड़े देशों का मकान घर मतलब घर बिल्डिंग बोल सकते हैं इसको।

नीम का पेड़ है इसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है देखने मे बड़े - बड़े लोगों का बड़ा - बड़ा सा घर है देखने मे भी अच्छा लग रहा है।

ऑरेंज कलर की फुल भी है व्हाइट कलर के फुल भी है और और भी ज़्यादा बेहतरिन लग रहा देखने में।